देखने पर यह फोटो किसी दुकान की लग रही है और यहां पर --

यह फोटो बहुत ही सुशोभित नजर आ रही है।

बीच में बहुत सारा पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह पार्क बहोत ही सुंदर नजर आ रहा है।

ट्रेडमिल्स और डंबल्स ये सभी तरह की चीजें --

स्कूल की है जिसमें पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी को --

जिसमें बहोत सारी मशीनें हैं इन मशीनों का यूज घर में--

किसी बाइक में या दरवाजे में ऑयल डालने या फिर बहोत से कामों में लिया जाता है।

बहोत ही अच्छा मंदिर है और यहां की मान्यता भी बहोत ही --

टेस्टी लग रही है यहां बिरयानी दिखाई हुई है।

हेयर्स शेविंग बहोत ही अच्छे और सलीके से की जाती है।